यहाँ पर ऊंचे-ऊंचे बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग है।

यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं और विंडो है खिड़की है दीवाल से घेरा हुआ है ।

यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे आदमी है और सब ढलाई कर रहे हैं और छत के ऊपर सब कुछ बना रहे हैं ढलाई कर रहे हैं छड़ से सब बांध रहे हैं।

जिस पे नारियल लोग बाटते है वो है फूल फूल सब भी है और चेयर भी है साइड साइड में और कैंडल्स --